एक जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में कुछ पेड़ पौधे हैं।

और मैदान में तीन झंडे लगे हुई दिखाई दे रहे है और और--